पहारों मे सबसे ज्यादा ऑटो होते हैं यहाँ एक ट्रक खड़ा हैं ट्रैक्टर हैं।

ये एक तीन रंगो का घर है जिसमे ऊपर छत केसरिया रंग में है |

यहाँ हरे-हरे पत्ते दिखाई दे रे पता नहीं किस चीज की खेती है समझ नहीं आ रहा है।

और कुछ लोग गौर से दिखाई दे रहै हैं जो नहा रहै हैं यहाँ पे खंभे गड़े हैं लाइटस हैं।

ऊपर में बिजली के तार दिखाई दे रही हैं ऊपर नीचे में हरा-भरा पौधा है घांस है।

यहाँ पे छै का नारियल का पेड़ दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पे एक बैंक है इसमें लोग पैसा निकालने के लिए जमा करने के लिए आते है।